यह घर कितना प्यारा है यह घर मार्बल से बना हुआ है सफेद मार्बल से--

और इसका फ्लोर जो है भूरे रंग के मार्बल से बना है और यहाँ पर शोपीस रखे गए है।

उनके इन शोपीस को देखने के लिए बहोत से लोग जो है आते है।

जिस पर लिखा है हमारे यहाँ सभी प्रकार के कोपी पेन पेन्सिल रबड़ कम्पास एवं--

यह एक तालाब है यहाँ पर पानी रुका हुआ है जब पानी रुक जाता है।

तो उस प नीले नीले--

और जो रुका हुआ पानी होता है वह बहोत ही बदबूदार और गंधा पानी होता है।

यह चित्र किसी एक घर का है और यहाँ पर शोपीफेलमिरा दिखाई गई है यहाँ पर बहोत सी--

और भी जैसे यहाँ पर छोटा सा टेडी है जोकि जमुनी कलर का है।

लेकिन इस ए_टी_एम पर भीड़ लगी हुई है लोगो की की इन लोगो ने लाइन बना के रखी है।

यहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ऐसा लग रहा है यह लोग मेले में आए हुए हैं।

- यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे में एक बेड बिछाया गया है और स चार पाई के उपर--

और यहाँ पर बैग रखा हुआ है और फिर दूसरा काला बैग भी रखा हुआ है और कपड़े भी रखे हुए है।

और देखो यहाँ पे छोटी छोटी सीमेंट की सीढ़ियां जैसे बनाई हुई है।

यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है जो कि लाल रंग की है।

ये एक झांकी निकाली गई है और ये एक सुंदर झांकी का दृश्य है।

और इस झांकी को लोग देख रहे है यह झांकी का जो रंग है वो जमुनी कलर का है।

यहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि सफेद कलर की गाड़ी है और भी ये गाड़ी रुकी हुई है सड़क पर--

और यहाँ पर दो खम्बे दिखाई दे रहे है यह खम्बे बिजली के है।

ये एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है लेकिन ये पहाड़ सिर्फ और सिर्फ--

पत्थरों की चिटानों से बनाया गया है ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ये पत्थर मिल के।

इस अ विशाल से पर्वत को बनाए हुए हैं और--

यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शादी की फंक्शन है।

और इस झरने के किनारे पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे कर्मचारी मीटिंग कर रहे हैं और वे ये खड़ा व्यक्ति--

और यह मशीन है जैसे की इनमे बहोत सारी क्रेने रखी हुई है।

क्युकी जो सामान हम हाथ से नहीं उठा सकते वो यह क्रेने उठाती है और--

इनको एवरग्रीन के पौधे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हर समय सर सबस रहते है।

यह एक दुकान है और जिसका नाम डस्टी कैफ़े है आप देख सकते है--

ये यहां पे ग्रास मेटिंग कितने अच्छे से बिछी हुई है ऐसे लग रहा है जैसे हर तरफ है।

यहाँ पर बुट्टे रखे गए हैं और ये बूट्टों का छिलका उठाया गया है।

और इन बुंडू का छिलका बहार से हरे रंग का है और इन बुंडू के छिलको को उठा के नीचे रखा हुआ है।

ओशिन व्यू है जो की सफ़ेद रंग का है।

और इसी के दूसरे तरफ हम देख सकते हैं बुद्धा की एक और मूर्ति रखी हुई है।

बोध धर्म के लोग इसे बहोत मानते है।

और इसको सजाया गया है गुबारों से हम देख सकते हैं यहाँ पे संतरे रंग के गुब्बारे--

ये एक मोबाइल की दुकान है यहां पे--

और भी सेल फ़ोन का बहोत सारा सामान जैसे की सेल फ़ोन के चार्जर वगैरह--

या फिर मेमोरी कार्ड वगैरह बेचे जाते हैं यहाँ तरह-तरह के मोबाइल का सामान--

यह एक कैफ़े शॉप है और लोग यहाँ पर कॉफ़ी पिने के लिए आते है।

इनकी कहते है की यहाँ की कॉफ़ी बहोत ही मजेदार होते है।

यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े विशाल पत्थर दिखाई दे रहे हैं और पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियां भी--

ये सीढ़ियाँ कितनी ज्यादा बड़ी हैं और इनके साइड में हम देख सकते हैं।

यहाँ प महिलाए एक पेड़ की पूजा करने आयी है।

इनके कहा जाता है यह पेड़ बहोत ही पवित्र है।

पूजा कर रही है यहां पर बहोत सारे बच्चे भी पूजा में शामिल हुए हैं।

इस रस्ते के इरत गीरत चिनार के दर खद दिखाई दे रहे है और वे सर सव्ज है यह रास्ता पथरो से बनाया गया है।

ये एक विशाल मंदिर है और ये मंदिर पूरा पत्थरों से बना हुआ है।

गे एक प्रातकाल का मंदिर है।

ग्राहक यहाँ पोल्ट्री फार्म में आके इन मुर्गों को ले जाते हैं और वे फिर अपनी दुकानों पर इनको बेच देते हैं।

इतनी सारी मुर्गी पोल्ट्री फार्म में है जो की दिखाई दे--

और ये अवेते अपने साथ फल मेवे नारियल वगैरा कुछ लेके आई हुई हैं।